एक नदी है। नदी में बहोत सारे आदमी बैठे हैं शायद खाना खा रहे हैं। कुछ लोग झाड़ू लेके खड़े हैं।